बाकी कुछ इक्विपमेंट येलो कलर के है और एक भी बना।

ये एक चर्च के अंदर का पिक्चर है जिसमें सात पादरी है।

और पूरी म दीवार जो है वाइट कलर की है जिसमें दो पंखे टंगे हुए एक पंखा घूम रहा है एक पंखा रुका हुआ है और एक बल्ब जल रहा है।

ये एक झरने का पिक्चर है झरना बहुत ऊंचाई से गिर रहा और पानी।

ये एक छोटा सा बिल्डिंग है बिल्डिंग पूरी तरह व्हाइट कलर की है।